इधर मोटरसाइकिल सब का पार्किंग है | उधर फोर व्हीलर सब का पार्किंग है | गाछ वृक्ष है |

इ एकठो स्टेट बैंक का ए.टी.एम. है।

ई कोई कपड़ा का दुकान है | पोस्टर लगा है लड़का सब का |

सब कॉपिये किताब का है | ऊपर कलम टंगा है लाल रंग का टेबूल है अच्छा लग रहा है |

गेट के दोनों तरफ हाथी है बोल लगा है।

इ लगता है बुध भगवान का है | इ किसका है शिव जी का फोटो है |

बहुत बढ़िया से क्यारी बनाके लगाया है फूल भी।

ये चूड़ी का दुकान है आगे में चूड़ी का --

टीचर बीच मे खड़ी है मास्क लगा हुआ है नीचे करके।

सब खड़ी हो के सुन रही है | इधर तीनगो मर्दानों है खड़ा होके सुन रहा है |

सबौर कृषि विश्वविद्यालय है।

लिखा हुआ है दलहन दिवस।

इ पता ने स्कूल है की घर है बहुत सुन्दर नया बना है।

ओपनिंग हो रहा है बैलून से सजा रहा है लड़का सब।

एगो स्टूडियो है फोटो स्टेट स्टूडियो आदमी सब --

बैएठल हेय पानी का बोतल सब रखा हेय मोटर साइकिल सब लगा हेय।

बायो का ए.टी.एम. है इधर कार रखा हुआ है।